मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
दो दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वीरें कुछ यादगार पल अब भी मेरी आँखों के सामने हैं इसलिए इस बार मन की बात की शुरुआत उन्ही पलों से करते हैं
टोक्यो ओलम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा
पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा
विजयी भव विजयी भव
जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था
ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं
आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएँ उनका हौसला बढ़ाएँ
सोशल मीडिया पर ओलम्पिक्स खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैम्पेन अब शुरू हो चुका है
आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए इंडिया के लिए चीर करिए
साथियो जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है
देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है
कल यानि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है
कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है
इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा
इसलिए ये और भी खास हो जाता है
मैं चाहूँगा कि आप कारगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरुर पढ़ें कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें
साथियो इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है
ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं
आपको याद होगा आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी
इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था तब से जम्मूकश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं
कई ऐसी घटनाएँ ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई आज लोग उनके बारें में भी जान पा रहे हैं
अब जैसे मोइरांग डे को ही लीजिये मणिपुर का छोटा सा क़स्बा मोइरांग कभी नेताजी सुभाषचंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानि इना का एक प्रमुख ठिकाना था
यहाँ आज़ादी के पहले ही इना के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था
अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोइरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया
ऐसे कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है
सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ
सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादासेज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएँ इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है राष्ट्रगानडॉटइन
इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रेकॉर्ड कर पाएंगे इस अभियान से जुड़ पाएंगे
मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे
इसी तरह के बहुत सारे अभियान बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे
अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं यह कोटिकोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है
हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना उनके सपनों का देश बनाना
जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है
हमें देश के लिए जीना है देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं
रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं जैसे वोकल फोर Local
हमारे देश के स्थानीय उद्यमियों आर्टिस्टों शिल्पकारों बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए
7 अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं
नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है
इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी
साथियो हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है
ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं लाखों बुनकर लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं
आपके छोटेछोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएँगे
आप स्वयं कुछनकुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं और जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं तब तो इतना करना हमारी ज़िम्मेवारी बनती ही है भाइयो
आपने देखा होगा साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं
ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है
क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है
आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयो बहनों को ही होता है
इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जनसेवा भी है देशसेवा भी है
मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयोबहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे माइहैंडलूमीप्राइड के साथ शेयर करें
साथियो बात जब आज़ादी के आंदोलन और खादी की हो तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है
ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो
तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा
नेशन फर्स्ट अल्वेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है
मेरे प्यारे देशवासियो आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवा साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
अभी कुछ दिन पहले ही माइगोव की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी
इस स्टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए सन्देश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखत कौन लोग हैं
स्टडी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीबकरीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं यानि भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं
मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखता हूँ
मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहाँ सकारात्मकता है संवेदनशीलता है
मन की बात में हम पॉजिटिव बातें करते हैं इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है
सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनंदित करती है
मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का अवसर मिलता है
साथियो आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत हैं
आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं भारतवासियों के सेवा और त्याग की ख़ुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं हमारे मेहनतकश युवाओं के इनोवेशन से सब को प्रेरित करते हैं
मन की बात में आप कई तरह के आईडीईएएस भेजते हैं
हम सभी पर तो नहीं चर्चा कर पाते हैं लेकिन उनमें से बहुत से आईडीईएएस को मैं सम्बंधित विभागों को जरुर भेजता हूँ ताकि उन पर आगे काम किया जा सके
साथियो में आपको साई प्रनीथ जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ
साई प्रनीथ जी एक सॉफ्टवेयर इंजिनियर हैं आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं
पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था
मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी
इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिये इस्तेमाल करने का फैसला किया
अब वे अलगअलग दाता सोर्सेस से वीथर दाता खरीदते हैं उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलगअलग माध्यमों से किसानों के पास जरुरी जानकारी पहुंचाते हैं
वीथर अपडेट्स के अलावा प्रनीथ जी अलगअलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए गाइडेंस भी देते हैं
खासकर बाढ़ से बचने के लिए या फिर तूफ़ान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं
साथियो एक ओर इस नौजवान सॉफ्टवेयर इंजिनियर का यह प्रयास दिल को छूने वाला है तो दूसरी ओर हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा
ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गाँव में रहने वाले श्रीमान् ईसाक मुंडा जी
ईसाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं
अपने यूट्यूब चैनल से वो काफ़ी रुपये कमा रहे हैं
वे अपने वीडियोस में स्थानीय व्यंजन पारंपरिक खाना बनाने के तरीके अपने गाँव अपनी लाइफस्टाइल परिवार और खानपान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं
एक यूट्यूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्च 2020 में शुरू हुई थी जब उन्होंने ओडिशा के मशहूर स्थानीय व्यंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था
तब से वे सैकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं
उनका यह प्रयास कई कारणों से सबसे अलग है
खासकर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जीवनशैली देखने का अवसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते
ईसाक मुंडा जी कल्चर और क्यूजिन दोनों को बराबर मिलाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब को प्रेरणा भी दे रहे हैं
साथियो जब हम टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और इंटरेस्टिंग विषय की चर्चा करना चाहता हूँ
आपने हालफिलहाल में पढ़ा होगा देखा होगा कि ईआईटी मद्रास के अलुम्नी द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है
3D प्रिंटिंग करके घर का निर्माण आखिर ये हुआ कैसे दरअसल इस स्टार्टअप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3 डाइमेंशनल डिजाइन को फीड किया और फिर एक विशेष प्रकार के कांक्रीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया
आपको यह जानकार खुशी होगी कि देशभर में इस प्रकार के कई प्रयोग हो रहे हैं
एक समय था जब छोटेछोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे
लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में स्थिति बदल रही है
कुछ समय पहले हमने दुनियाभर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमंत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया था
ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनोखा प्रयास है इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का नाम दिया
फिलहाल देश में 6 अलगअलग जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है
इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तौरतरीकों का इस्तेमाल किया जाता है
इससे कंस्ट्रक्शंस का टाइम कम हो जाता है
साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ किफायती और आरामदायक होते हैं
मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को लाइव देखा
इंदौर के प्रोजेक्ट में ब्रिक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पनेल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है
राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं जिनमें टनल के जरिए मोनोलिथिक कांक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है
इस टेक्नोलॉजी से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे
चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की टेक्नोलॉजीज प्रीकास्ट कांक्रीट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है
इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कम आएगी
रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे
इसमें हर कमरे को अलग से बनाया जाएगा फिर पूरे स्ट्रक्चर को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टॉयज़ को जोड़ा जाता है
अगरतला में न्यू जीलैंड की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहे हैं जो बड़े भूकंप को झेल सकते हैं
वहीं लखनऊ में कैनाडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है
इसमें प्लास्टर और पैंट की जरुरत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दीवारों का प्रयोग किया जाएगा
साथियो आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इन्क्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम करें
इससे हमारे प्लानर्स आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स और स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी को जान सकेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट भी कर पायेंगे
मैं इन बातों को खास तौर पर अपने युवाओं के लिए साझा कर रहा हूँ ताकि हमारे युवा राष्ट्रहित में टेक्नोलॉजी के नएनए क्षेत्रों की ओर प्रोत्साहित हो सकें
मेरे प्यारे देशवासियो आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी टो लर्न इस टो ग्रो यानि सीखना ही आगे बढ़ना है
जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नएनए रास्ते खुदबखुद खुल जाते हैं
जब भी कहीं लीग से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं एक नए युग का आरंभ हुआ है
और आपने देखा होगा जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परिणाम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है
अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेब एपल के साथ जोडेंगे तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जम्मूकश्मीर और उत्तराखंड का नाम आएगा
पर अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिये तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे
कुछ नया करने के जज़्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है
आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है
यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं
सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है
इन्हीं में से एक हैं टी एस रिंगफामी योंग tएस
रिंगफामी Young
ये पेशे से एक एयरोनॉटिकल इंजिनियर हैं
उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टीएस एंजेल tएस
एंजेल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है
इसी तरह अवुन्गशी शिमरे ऑगस्टीना अवुंगशी शिमरे ऑगस्टीन ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है
अवुन्गशी दिल्ली में जॉब करती थीं
ये छोड़ कर वो अपने गाँव लौट गईं और सेब की खेती शुरू की
मणिपुर में आज ऐसे कई एपल ग्रोवर्स हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है
साथियो हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा है
आदिवासी समुदायोँ के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं
लेकिन COVID19 महामारी के बाद इसकी खेती विशेष रूप से बढ़ती जा रही है
त्रिपुरा के उनाकोटी उनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं बिक्रमजीत चकमा
उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफ़ी मुनाफ़ा भी कमाया है और अब वो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे है
राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है
सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई हैं ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की माँग पूरी की जा सके
खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है
साथियो मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है
कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है
वहाँ महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया
वास्ते में से बेस्ट करने का मार्ग
केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है
इस फाइबर से हैंडबैग चटाई दरी कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं
इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया वहीँ दूसरी तरफ गाँव में रहने वाली हमारी बहनोंबेटियों को आय का एक और साधन मिल गया
बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को चार सौ से छह सौ रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है
लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है
केले की फसल के बाद आम तौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था
अब उनके ये पैसे भी बच जाते है यानि आम के आम गुठलियों के दाम ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है
साथियो एक ओर बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाये जा रहे हैं वहीँ दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं
ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है
इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है
जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी
लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी इस इनोवेटिव आईडीईए को महिलाएं ही लीड कर रही हैं
साथियो ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं
आप के आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे
जब आपका परिवार मन की बातें कर रहा हो तो आप इन्हें भी अपनी गपशप का हिस्सा बनाइये
कभी समय निकलकर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाइए और अवसर मिल जाये तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाइए
और हाँ यह सब आप मेरे साथ NamoApp या माइगोव पर साझा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे संस्कृत ग्रंथों में एक श्लोक है
आत्मार्थम् जीव लोके अस्मिन् को न जीवति मानवः
परम् परोपकारार्थम् यो जीवति स जीवति
अर्थात् अपने लिए तो संसार में हर कोई जीता है
लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति जीता है जो परोपकार के लिए जीता है
भारत माँ के बेटेबेटियों के परोपकारिक प्रयासों की बातें यही तो है मन की बात
आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं
एक साथी चंडीगढ़ शहर के हैं
चंडीगढ़ में मैं भी कुछ वर्षों तक रह चुका हूँ
यह बहुत खुशमिजाज और खुबसूरत शहर है
यहाँ रहने वाले लोग भी दिलदार हैं और हाँ अगर आप खाने के शौक़ीन हो तो यहाँ आपको और आनंद आएगा
इसी चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साईकिल पर छोलेभटूरे बेचते हैं
एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आईडीईए के साथ उनके पास आई
दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोलेभटूरे खिलाने को कहा
वे इसके लिए खुशीखुशी तैयार हो गए उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया
संजय राणा जी के छोलेभटूरे मुफ़्त में खाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है
वैक्सीन का मेसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोलेभटूरे दे देंगे
कहते हैं समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है
हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं
साथियो ऐसे ही एक और काम कि चर्चा आज करना चाहूँगा
ये काम हो रहा है तमिलनाडु के नीलगिरी में
वहाँ राधिका शास्त्री जी ने एम्बर्क्स एम्बुरेक्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है
इस प्रोजेक्ट का मकसद है पहाड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना
राधिका कून्नूर में एक कैफे चलाती हैं
उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एम्बर्क्स के लिए फंड जुटाया
नीलगिरी पहाड़ियों पर आज 6 एम्बर्क्स सेवारत हैं और दूरदराज़ के हिस्सों में एमरजेंसी के समय मरीजों के काम आ रही हैं
एम्बुरेक्स में स्ट्रेचर आक्सीजेन सिलिंडर फर्स्ट एड बॉक्स जैसी कई चीजों की व्यवस्था है
साथियो संजय जी हों या राधिका जी इनके उदाहरणों से पता चलता है कि हम अपना कार्य अपना व्यवसाय नौकरी करतेकरते भी सेवा के कार्य कर सकते हैं
साथियो कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ जिससे भारतजॉर्जिया मैत्री को नई मजबूती मिली
इस समारोह में भारत ने सेंट क्वीन केटेवान सैंट क्वीन केतेवन के होली रेलिक होली रेलिक यानि उनके पवित्र स्मृति चिन्ह जॉर्जिया की सरकार और वहाँ की जनता को सौंपा इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयं वहाँ गए थे
बहुत ही भावुक माहौल में हुए इस समारोह में जॉर्जिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अनेक धर्म गुरु और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्थित थे
इस कार्यकम में भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे गए वो बहुत ही यादगार हैं
इस एक समारोह ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के संबंधों को भी और प्रगाढ़ कर दिया है
ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट क्वीन केटेवान सैंट क्वीन केतेवन के ये पवित्र अवशेष 2005 में गोवा के सैंट ऑगस्टाइन चर्च से मिले थे
साथियो आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है ये कब और कैसे हुआ दरअसल ये आज से चार सौ पांच सौ साल पहले की बात है
क्वीन केटेवान जॉर्जिया के राजपरिवार की बेटी थीं
दस साल के कारावास के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थीं
एक प्राचीन पुर्तगाली दस्तावेज के मुताबिक सैंट क्वीन केतेवन की अस्थियों को ओल्ड जीओए के सैंट ऑगस्टाइन कन्वेंट में रखा गया था
लेकिन लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गोवा में दफनाए गए उनके अवशेष 1930 के भूकंप में गायब हो गए थे
भारत सरकार और जॉर्जिया के इतिहासकारों रिसर्चर्स आर्कियोलॉजिस्ट्स और जॉर्जियन चर्च के दशकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अवशेषों को खोजने में सफलता मिली थी
यह विषय जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है
इसीलिए उनके हिस्टोरिकल रिलिजियस और स्पिरिचुअल सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन अवशेषों का एक अंश जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निर्णय लिया
भारत और जॉर्जिया के साझे इतिहास के इस अनूठे पक्ष को संजोए रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा
गोवा कई महान आध्यात्मिक धरोहरों की भूमि रही है
सैंट ऑगस्टाइन चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिते चर्चेस एंड कन्वेंट्स ओएफ जीओए का एक हिस्सा है
मेरे प्यारे देशवासियो जॉर्जिया से अब मैं आपको सीधे सिंगापुर लेकर चलता हूँ जहाँ इस महीने की शुरुआत में एक और गौरवशाली अवसर सामने आया
सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मेरे मित्र ली सेन लुंग ली सिएन लूंग ने हाल ही में रिनोवेट किए गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उद्घाटन किया
उन्होंने पारंपरिक सिख पगड़ी भी पहनी थी
यह गुरुद्वारा लगभग सौ साल पहले बना था और यहाँ भाई महाराज सिंह को समर्पित एक स्मारक भी है
भाई महाराज सिंह जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी और ये पल आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है
दो देशों के बीच पियोपल टो पियोपल कनेक्ट उसे मजबूती ऐसी ही बातों ऐसे ही प्रयासों से मिलती है
इनसे यह भी पता चलता है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में रहने और एकदूसरे की संस्कृति को समझने का कितना महत्व है
मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात में हमने अनेक विषयों की चर्चा की
एक और विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है
ये विषय है जल संरक्षण का
मेरा बचपन जहाँ गुजरा वहाँ पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी
हम लोग बारिश के लिए तरसते थे और इसलिए पानी की एकएक बूँद बचाना हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है
अब जन भागीदारी से जल संरक्षण इस मंत्र ने वहाँ की तस्वीर बदल दी है
पानी की एकएक बूँद को बचाना पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना यह हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए
हमारे परिवारों की ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो
साथियो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भारत के सांस्कृतिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है
वहीं बारिश और मानसून हमेशा से हमारे विचारों हमारी फिलॉसफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए हैं
ऋतुसंहार और मेघदूत में महाकवि कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है
साहित्य प्रेमियों के बीच ये कवितायें आज भी बेहद लोकप्रिय हैं
ऋग्वेद के पर्जन्य सुक्तम में भी वर्षा के सौन्दर्य का खूबसूरती से वर्णन है
इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी काव्यात्मक रूप से पृथ्वी सूर्य और वर्षा के बीच के संबंधों को विस्तार दिया गया है
अष्टौ मासान् निपीतं यद् भूम्याः च ओदमयम् वसु
स्वगोभिः मोक्तुम् आरेभे पर्जन्यः काल आगते
अर्थात सूर्य ने आठ महीने तक जल के रूप में पृथ्वी की संपदा का दोहन किया था अब मानसून के मौसम में सूर्य इस संचित संपदा को पृथ्वी को वापिस लौटा रहा है
वाकई मानसून और बारिश का मौसम सिर्फ खूबसूरत और सुहाना ही नहीं होता बल्कि यह पोषण देने वाला जीवन देने वाला भी होता है
वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए
आज मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न इन रोचक सन्दर्भों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूँ
आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुतबहुत शुभकामनाएं
पर्व और उत्सवों के समय ये जरुर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है
कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल्स आपको भूलने नहीं है
आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें
बहुतबहुत धन्यवाद